जैसे कि आप देख सकते है हमारे पास यहाँ पर एक हवेली है और इसमे काफी सारी चीजें है।

जेसे की आप देख सकते है इसमे किचेन भी हो सकता है टॉइलेट भी हो सकता है बाथरूम भी हो सकता है और यहा पर दीवार भी लगी हुई है।